यह किसी गुरूजी की यात्रा निकाली जा रही है | गुरीजी बैठे है | यहाँ पे सभी उनके दर्शनाभिलासी कहिये या उनके --

ये मछली मार्केट है। छोटी सी जगह में अपनी किसी ने दुकान अपना लगा रखा है। बंदा बैठा है। औरतें भी बेच रही हैं यहाँ पे आराम से। लोग लेके जा रहे हैं। खरीद रहे हैं। खड़े होके पूछ रहे हैं।

क्या होता है कैसे होता है कितना रेट से मिलता है और देखिये उसमे छोटी बड़ी बहोत हैं।

और अ ऊपर भी बहुत सारी बुक्स रखी हुई है अलग अलग।

यह मंदिर अ मंदिर में अ देखिए भगवान जी की या हम कह सकते है गौतम बुद्ध जी की अ बड़ी अच्छी-अच्छी ये स्क्लब्टर्स बनी हुई हैं और स्क्लब्टर्स के पीछे --

छप्पर या छान कह सकते है हम जिसको कच्चे फूले से और लकड़ियों से बनाया जाता है। पास में अल्टो खड़ी है। अल्टो के पास एक बंदा खड़ा है। सामने बोर्ड के पास से एक लड़की जा रही है। वहाँ भी एक गाड़ी खड़ी हुई है।